चढ़ने का सीढ़ी भी दिखाई दे रहे हैं लोहा से बना हुआ।

दिर के सामने एक खुटा भी गड़ा गया है।

यहाँ एक स्वर्ण मंदिर जेलर्स है डी में लिखा हुआ है ।

एक मोटर साइकिल वाले हेलमेट पहन के जा रहे हैं।

यहां किसी चीज का दुकान है जहां दुकान के सामने बहुत सारे मोटरसाइकिल खड़े हैं।

पंखा भी लगाया गया है और बल्ब भी लगाया गया है

यह एक बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

ये कहीं पूजा का त्यौहार है यहां बहुत सारा लाइट लगाया गया है।

बहुत सारे कुर्सी भी रखे हुए हैं और बहुत सारे बेड भी रखे हुए हैं।

यह एक कपड़े का बहोत बड़ा दुकान है जो बहुत सारे कपड़े रखे हुए--

के बगल में और एक आदमी है उसके पीछे में और एक आदमी दीख रहे हैं।

यह एक ऑफिस जैसा तस्वीर दिख रहा है। जहां बहुत सारे आदमी हैं। लेडिस भी हैं।

यहां एक कैंटीन एक बिल्डिंग पे लिखाया गया है।